अपने गणवेश में खड़े हैं। यह स्वतंत्रता दिवस या गवंतन्त्र दिवस का कार्यक्रम लग रहा है क्योकि कुछ बच्चे पट्टियों मे भी है और झंडोत्तोलन हो रहा है।

उन्होंने अपनी सेफ्टी यानि सुरक्षात्मक उपकरण भी नहीं पहना हुआ है। ये अपनी पूरी लग्न से छत की ढलाई कर रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं।

सामने बहू मंजिले इमारत वाले इलाके का एक हिस्सा पास ही में एक घर छोटा सा घर या दुकान दिख रहा है जो उतना अच्छा नहीं है।

कुछ बच्चे हैं यहाँ दक्षिण भारत के किसी भा सा में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जो आप उपर देख सकते हैं।

सात मंजलि एक सोसायटि सोसायटि और फ्लैट में काई लोग रहते हैं ऐसी सोसायटियों का निर्माण जगह --

यहाँ रंगीन झूले और फिसलने वाले लगे हैं जहाँ लोग घूमते-फिरते हैं फिसलते हैं और मजे करते हैं।